इन्होंने व्हाइट कलर की कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने को एक लोहे की रेलिंग हुई दिखाई दे रही है।

इधर पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा आजू बाजु--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

हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे सामने।

दिखाई दे सामने में इधर वायरिंग आईरिंग लगी हुइ दिखाई दे रही है इधर आसमान दिखाई दे रही है।

छोटा सामने शॉप है दुकान वुकान खुली दिखाई--